ऊपर लाइट भी लगी हुई है अलमारी रखा हुआ है आ अलमारी के बगल से तीन कुर्सियाँ भी लगी है।

सामने ये बिल्डिंग ब ब बिल्डिंग बनी हुई है और बिल्डिंग में बहोत सारे बहोत सारे लकड़ियां लगी हुई है जो अभी कंप्लीट नहीं बनी हुई है और नीचे गाड़ियां रखी हुई है और बादल ए ह नीले है।

एक सामने जो मकान बन रहा है और मकान के सामने मैदान बना हुआ है जिस मैदान के पास एक-एक ज ईटा मैदान में ईंटे रखी हुई हैं।